जहां पर स्टेज पर ढेर सारे बच्चे अपनी कलाकृति को दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

किसी वर्किंग ऑफिस का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

जहां पर शादी विवाह के कार्यक्रम में लोगों के आने जाने के लिए मुख्य द्वार बना होता।

पादरी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा एक और लेडिस --

माइक मे कुछ बोलती हुई दिखाई दे रही है पीछे दीवाल पर ईसा मसीह का स्टेचू लगा हुआ है।

मॉल के बाहर में ढेर सारी मोटरसाइकिल सब लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक लेडिस सफाई कर्मचारी भी है।

जहां पर एक ही कलर के दो बड़े बस --

और उसमें कोई भी यात्री नहीं है जबकी दूसरे बस में कुछ यात्री--